ग्रास अ जो घास है वो बड़ी अच्छी ग्रीन की कलर की दिख रही है और यहाँ पे छोटे छोटे रेड फूल भी दिख रहे हैं।

और ये के.वाई.सी. कर रहे हैं अ वहाँ पे सी.सी.टी.वी. का स्क्रीन भी है एक लैपटॉप भी है और न आ थंब के.वाई.सी. के लिए जो थंब --

वहाँ पे मिरर भी है और बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम है एक स्टेयर भी दिख रही है वहाँ पे और एक वुडन का पिलर भी है।

यह एक तालाब का दृश्य है जिसमे तीन लेडीज है एक पानी में उतरी हुई है दो किनारे पे है यहाँ पे एक ब्लेक कलर शर्ट में जो लड़का बैठा है वो पत्थर पे बैठा है पीछे साइड एक बोर्ड दिख रही है और पीछे साइड बहुत हरे भरे माउंटेन दिख रहे है।

ये एक बहुत पुराना इतिहासिक मौनुमेंट लग रहा है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिनका कलर ग्रे है ऐसे देक अं लगता है की यह बहुत ओल्ड है जिसके पिलर्स है उसको छत नहीं है और ऊपर आसमान साफ़ और नीला है।